ये बच्चे भी ईस्कूल में बैठे हैं। ये भी कुछ बना रहे हैं। एक लड़की किसी चीज पे गोंद चिपका रही है।

'' एक लड़की बैठी है और एक लड़के को चिपका रही है कई सारी लड़कियां हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेम खड़ी हैं। ''